हम देख रहे है की जोकी फैशन है उसके नीचे एक शटर लगा हुआ है शटर के साइड में एक सीढ़ी है शटर के पास में ढेर सारे सामान रखे हुए है उसके ऊपर।

बना हुआ है उसके बगल मे भी एक दुकान है और ये एक लड़की बनी हुई है और यहां पे ढेर और जो की फैशन मे है एक जोकि लिखा हुआ है उसके --

हम देख रहे हैं की एक दौलताबाद फ़ो फोर्ट है किला है जहाँ पे तीन कऊवे हैं फिर एक बिल्डिंग टाइप से बना हुआ है जहाँ पे ढेर सारा बादल है और एक गेट है और उसमें ढेर सारे पौधे हैं पौधे में ढे अ नीचे ईंट हैं ढेर --

हम देख रहे हैं की यहाँ ढ़ेर सारे गार्डन है गार्डन में ढ़ेर सारे फूल है उसके ऊपर बिल्डिंग है जो बिल्डिंग मे ढ़ेर सारे खिड़कियाँ और फ्लोर है और हम देख रहे हैं कि साइड साइड पेड़-पौधे हैं और एक गार्डन मे ढ़ेर सारे फूल हैं जो की बहोत से कलर के हैं कोई बादामी कोई पिंक है।

बर्तन पीने के डब्बे में और यहां ढेर सारे कुरकुरे बिस्कुट है कुरकुरे बिस्कुट में यहाँ पे ढेर सा ढाबे है और यह दुकान है दुकान के आस-पास दिवार लगे हुए है और यह एक रिसेप्शन टाइप सा बना हुआ है यहाँ पे |

हम देख रहे हैं की एक व्यक्ति है जो की भाषण दे रहे हैं भाषण में हम देख रहे की इ चर्च का साइन है साइन में एक व्यक्ति पियानो बजा रहे हैं पिया पियानो बजा रहे हैं ढेर सारे तार हैं तार के ऊपर पं पंखे है और हम देख रहे हैं यहाँ पे --